यहां पर बहुत सारे कपड़े भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पे कपड़े अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहोत सारे पैकेट भी टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी घड़ियां भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

कार पर बहोत सारे फूल भी लगे हुए दिखाई दे रही है कार व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पर सिढियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारी सीढ़ियां लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर बहोत सारे शीशे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।